इस दृश्य में बहोत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है और पास में होटल है जो बंद है।

और बहोत सारी महिला पुरुष और--

और ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

पास में एक गाड़ी है उसके पास एक आदमी खड़ा है।

और पीछे एक घर भी है बिजली का खंबा भी है बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

एक घर के सामने एक सिक्योरिटी भी खड़ा है गेट बहोत ही बड़ा है।

और वाइट कलर के कपड़े भी हैं।

तो आधा नीचे से दिखाई दे रहा है।

पास में बहोत सारे पौधे भी हैं पेड़ पौधे एक बड़ा सा पेड़ भी है अंदर।

यहां पर दो लड़के खड़े हैं।